ऊपर जो है सो रंग बिरंग का कागज और ये फूल जो है सजाया हुआ है छत पर।

उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है।

और रात का समय है।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइट है।

रेलिंग वाइट और ब्लैक कलर से पेंट है।

एक आदमी खड़ा हो कर के भाषण दे रहा है।

बीच में जो है सो पोल नजर आ रहा है छोटा पूरा बड़ा--

बिजली का भी खंभा नजर आ रहा है और तार है। बिजली